यहां पर मंदिर एक दिख रहा है जहाँ पे स्कूटीयां सब लगी हुई है।

यहां पास कार भी है यहां पर गेट भी है।

एक बाबाजी की रैली लगी है।

और झाड़ियों की डंडी दिख रही है।

यहां पर कोलकाता का वह बोर्ड लगा हुआ है स्वीट ऐंड फ्लावर का।

यहां पर वो मिस्टर जोसेफ हॉस्पिटल में --

यहां पर कुर्सियां लगी हुई है।

यहा पर जन दिख रहे है और थोड़ी एम साइड में झाड़ सब दिख रहे --

यहां पर फोटो कार्ड सब लगी हुई है डोर्स पे --

यहां पर बाइक लगी हुई है यहां पे हेलमेट लगी हुई है।

यहां पर जब में यहां पे पेड़ पट्टे दिख रहे है।

यहां पर आसमान दिख रहा है यहां पर ट्रैक्टर दिख रहा है।

पानी दिख रहा है यहां पर वाटर स्लाइड्स दिख रहे हैं छोटे से यहां पर ट्यूब दिख रहा है।

यहां पर इस पत्थर सब दिख रहा है।

यहां पर एसियाँ लगी हैं फैन लगी हैं यहां पर खिड़की लगी हुई है।

यहां पर पट्टियां सब लगी हुई है।

ऊपर टू करके बड़े से पोस्टर में लिखा हुआ है।